और कुछ कुछ मिल भी रहा है घर घर घर के अंदर भी काफी लाइटिंग है और ये लोग काफी अच्छी तरह से नमाज पढ़ रहे हैं।

एक एक रूम है जिसमें बहुत बहुत सारे वाकर वगैरह रखे हुए है।

ये ये मछली बाजार है सारे मछली बॉक्स बॉक्स में रखे हुए हैं ऊपर में छतरी बना हुआ है।

और सअ बहुत सारे लोग हैं जो कि मछली मछली को देख रहे हैं।

और घघर के अंदर बहुत सारे हरहरियाली बने हुए हैं।

और बहुत सारे बहुत सारे पोल भी है पोल के ऊपर छत्छत्री लगा हुआ है।